अलमारी बनी हुई है अलमारी में बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं।

बीच में बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं मैट बिछा हुआ है।

आगे की तरफ कुछ ईंटे जैसा थोड़ी दूर तक गया है।

और पेड़ दिखाई दे रहे हैं हमें बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं हमें।

आगे की तरफ रेड कलर के छज्जे जैसा कुछ बना है।

के बीच में मूर्ति बनी हुई है किनारे-किनारे ग्रिल लगा हुआ है।

और आगे की तरफ कु कुछ सजावटें हो रखी हैं।

थोड़ा दूर पे मंडप सजा हुआ है ऊपर बहोत सारी लाइटें लगी हुई है।

नीचे की तरफ गड्ढा बना गड्ढे जैसा है जहां पे बहोत सारे सामान पड़े हुए हैं।

ऊपर की तरफ ग्रिले बनी हुई है और पीछे की तरफ मैदान दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें गास्ते का नजारा दिखाया गया है।

एक तरफ मेकअप के सामान रखे हुए हैं।

यहां पे एक लड़की रेड कलर की कुर्सी पे बैठी हुई है जो कुछ छान रही है।

इस तस्वीर में हमें बहुत बड़ा मंच दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें गार्डन का दृश्य दिखाया गया है।

आगे की तरफ छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं लकड़ियां रखी हुई हैं।

यहां पे कुछ चोको बार वगैरा रखे हुई है इसके ऊपर लाइटे आ रही है।